वापस आ रहे है और अपने जो भी बाईक है साईकल है वहाँ रखा हुआ है और उसको लेके अपने घर जायेंगे--

ये हर घर को पसंद है मुली--

और नीचे भी बहुत हरे-भरे घास है और पेड़ भी है ये काफी पुराना किला है।

आप देख सकते है की यहाँ सामने मेन्स --

ये फोटो को देखके लग रहा है। --